एक रोड पर दो-तीन गाड़ियां खड़ी है दो आटो खड़ी है और एक पिकअप है पिकअप पे एक बड़ा बैनर लगा हुआ है जिसपे की एक आटो बना हुआ है और इलेक्ट्रिक अल्फा लिखा हुआ हैं।

और सामने भी एक काउंटर है जिसके सामने एक आदमी खड़ा है।

बहोत सारे लोग पानी मे खड़े हुए हैं जिसमे की औरते और मर्द दोनो हैं ।

एक बड़ा पेड़ है जिसकी कुछ डालियाँ नीचे लटकी हुई है और वो काफ़ी हरी-भरी है ।

घर दिखाई दे रहा है जो कि कई मंजिला है और वो गुलाबी और संतरे कलर का है घर के आगे रस्सी पे कपड़े लटक रहे हैं।

एक ट्रैन खड़ी है जो के काफी लम्बी है और पीले कलर की है और ट्रैन खड़ी है ट्रैन के बगल में एक बहुत ही बड़ा ओवर ब्रिज दिख रहा है।

बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा हैं जैसे की नदी हो और उसके बिच में कुछ पत्थर भी बड़े-बड़े दिख रहे हैं ।

एक कमरा है जिसमे की बहोत सारी लकड़ी की रेके बनी हुई हैं और उनमें बहुत सारी किताबे रखी हुई हैं ।

बहुत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है जिसका फर्श पूरा टाइल्स का लगा हुआ है और दो बड़े-बड़े काउंटर भी दिख रहे है उसके पीछे कुछ कुर्सियां भी दिख रही है।